नमस्कार आपका स्वागत है मैंने प्रत्येक लूपिंग looping स्टेटमेंटstatement के लिए अलग ट्यूटोरियल बनाने का निश्चय किया है
मैं इसे सरल रखना चाहता हूँ यह सन्दर्भ के भांति लाभदायक भी होगा यदि आप देखना चाहते हैं कि कैसे कोई विशिष्ट लूपloop कार्य करता है
इस ट्यूटोरियल में हम while लूपloop के बारे में जानेंगे
while लूपloop लूप के प्रारंभ में एक कंडीशन यानि शर्त को जाँचता है और कंडीशन के सही या गलत पर निर्भर रह कर कोड का निष्पादन करता है
उदाहरणस्वरूप मैं अपना while loop यहाँ से शुरू करूँगा और यह कंडीशन है और यह मेरा ब्लॉकढाँचा
मैं अपने ब्लॉक को कर्लीcurly कोष्ठकों के बीच में प्रदर्शित करूँगा
मेरी कंडीशन यहाँ है अब if statement में उदाहरणस्वरूप मैंने प्रयोग किया 1=1
अब यदि मैं यहाँ test या loop कहता हूँ
यहाँ पर एक लूप है और फिर एक break विराम अब क्या होगा जब तक 1=1 यह एक लूप बनाएगा
यदि मैं यहाँ कुछ करता हूँ चलिए इसको जाँचें
संभवतः आपका ब्राउज़र काम करना बंद कर देगा क्योंकि लूप तब तक दोहराएगा जब तक 1=1 और अनंत बार के लिए 1 हमेशा 1 के बराबर होगा
अतः चूँकि लूप हमेशा दोहराया जायेगा आपका ब्राउज़र काम करना बंद कर देगा
चलिए कहते हैं जब तक एक वेरिएबल num is smaller or equal to 10 num 10 से छोटा या बराबर है और echo के अन्दर मैं कह सकता हूँ num ++
++ एक अरिथ्मेटिकल ऑपरेटर है और मूलतः यह क्या करता है यह num को 1 से बढाता है यह num =num +1 लिखने के समान है
अतः यह num लेता है और कहता है कि यह num+1 मान के बराबर है
अतः यह भी एक अरिथ्मेटिकल ऑपरेटर है क्या होने जा रहा है कि
हम कहने जा रहे हैं num lesser than or equal to 10 num 10 से छोटा या बराबर है यदि हाँ तब echo लूपloop और फिर कहिये वेरिएबल num में 1 जोड़ दें
लेकिन वास्तव में हम क्या करेंगे कि इस समय num =1 बनाते हैं अतः 1 पर लूपloop एक बार हो यह फिर 2 के बराबर होगा फिर 3 फिर 4 इसी तरह सब होते हुए 10 तक और फिर यह रुक जाएगा
इसके बाद इसके नीचे जो बाकी कोडcode है आगे बढ़ेगा
अतः हम इसे 1 कहते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलेगा ठीक है हमें loop मिला १२३४५६७८९१० बार
अब इसे अधिक मज़ेदार बनाने के लिए मैं बोलूँगा loop 1 और मैं num को इसके अंत में जोड़ दूँगा
असल में इसे और सरल बनाते हैं और num अन्दर कहते हैं यह इसको पढ़ने में सरल बनाएगा
ठीक है मैं कहता हूँ loop 1 और 1 जोडता हूँ और फिर कहता हूँ loop 2 और फिर दूसरा 1 जोड़ता हूँ; यह loop 3 है तथा मैं और इस तरह 1 से 10 तक जोड़ता हूँ
चलिए इसको खोलें इसे रिफ्रेश करें और यह हुआ आप को loop 123 इसी तरह से 10 तक मिल गया जैसा कि आप देख सकते हैं
चलिए यहाँ इस मान को बदल कर 100 करते हैं इसे रिफ्रेश करिए आप देख सकते हैं यह सौ तक गया है जितनी संख्या बड़ी होगी यह उतना ही लम्बा लूपloop लेगा
चलिए 6000 लेते हैं चलिए इसे रिफ्रेश करें यह कुछ समय लेगा वहाँ आप 6000 तक चले गए अतः यह इस तरह से काफी प्रभावशाली है
आप इसका प्रयास अरै array के साथ जोड़ कर प्रोग्राम बनाने के लिए कर सकते हैं जो कि अरै के भीतर वर्णमाला को सामने लाएगा
आप एक अरैarray के प्रत्येक मान को सामने लाने के लिए लूप्सloops का प्रयोग कर सकते हैं
बस इसको एक बार करिए मैं संभवतः इसको अपने अगले ट्यूटोरियल में करूँगा मगर बुनियादी अनुभाग में नहीं
यद्यपि यह बुनियादी संरचना है मैं आपको यह भी सलाह देता हूँ कि एक वेरिएबल max यहाँ बनाइए और आप अपना अधिकतम मान यहाँ पर रखिये
यह बिलकुल वही कार्य करेगा यह केवल समझने में सरल होगा और आप सबकुछ यहाँ पर घोषित कर सकते हैं और यह इसको निर्देश करेगा
यदि आपके पास 1 से अधिक लूप हैं मैं इसे अपने प्रोग्राम में पठनीयता और लचीलापन के लिए पसंद करूँगा अच्छा तो यह while loop था चलिए मैं इसे संक्षेप में प्रस्तुत करता हूँ यह प्रारंभ कि कंडीशन जाँचता है
यदि वह कंडीशन सही है तो यह कोड के ब्लाक को कार्यान्वित करेगा और आप इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं जैसे echo alpha
आपके वेरिएबल की वृद्धि की जा रही है सुनिश्चित कर लें कि आप अपने वेरिएबल कि वृद्धि करें अन्यथा लूप अनंत के लिए हो जाएगा
आईआईटीबॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद